बड़ा सा पेड़ है आसपास दो तीन पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे टेबल है चेयर है और यहां पे आसमान बादल यहां पे कुछ लोग दिखाई भी दे रहे हैं ट्रेन पे।

यहाँ पे टू व्हीलर है स्कूटी है और यहाँ एक सफेद रंग की कार है।

यहां पे बहुत सारे शेल्फ है शेल्फ के अंदर बड़े बड़े बॉक्सेस है बॉक्सेस के अंदर चॉकलेट्स है बिस्किट्स है स्नैक्स है।

ये एक यहां पे केव दिखाई दे रहा है इसका नाम है द रेड केव यहां पे काउंटर पे रेड पेंट है यहां पे फ्रिज है और यहां पे शेल्फ है जो कि रेड कलर का है और यहां पे बहुत सारे डेकोरेटिव लाइट्स है टेबल है बास्केटस है।

और ये सारे लोग ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहने हैं।

ये एक सड़क है सड़क है उस पार एक ब्रिज है ब्रिज के पास थोड़ा सा पानी का पुल है छोटा सा और यहां एक पत्थर का एक रूम दिखाई दे रहा है बिजली का खंबा है बहोत सारे वायर है।

चेयर है टेबल है और बहुत सारे लोग यहाँ पे फूड क्वांटी में खाना खा रहे हैं यहाँ पे जूस के बॉटल्स और पानी की बॉटल्स दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे--

यहाँ पे लैपटॉप है यहाँ पे ग्लोब है बहुत सारे बुक्स है और यहाँ पे सामने एक दो ब्लैक कलर के चेयर है और यहाँ पे पोस्टर है दीवार पे स्ट्रगल टुडे स्ट्रेंथ टुमारो और यहाँ पे कुछ लाइट्स है छोटे-छोटे--

कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं मशीन्स दिखाएं दे रहे हैं।

ये एक बगीचा है बगीचे में यहां पे दो सड़क हैं यहां आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे हैं स्ट्रीट लाइट्स हैं।

यहाँ पे पानी का पाइप है बड़े-बड़े नारियल के पेड़ है छोटे पेड़ है यहाँ पे रंग बिरंगे फूलों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।